ये एक वॉटर पार्क है यह एक बहुत ही सुंदर है आउट साइड बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है।

ये चिड़ियाघर की इमेज है चिड़ियाघर में हम अनेक प्रकार के जानवर को देख सकते है सभी जानवरों को अलग-अलग अपने स्थान पे रखा जाता है।

यहाँ एक ग्राउंड की इमेज है जिसके चारों तरफ बॉउंड्री क्रॉस हुई है और बॉउंड्री के ऊपर वायर से सेफ्टी दी गयी है बीच में बिल्डिंग है।

ऊपर आसमान है जो की फिरोजी कलर में है जिसमे बहुत सारी वेलाइयी गयी हुई है।

यहाँ पर लोग घूमने के लिए कुछ योगा करने के लिए आते है और साइक में कुछ दो से तीन मंजिला बिल्डिंग भी है।

दरवाजे को फूलो से डेकोरेट किया गया है इसके ऊपर का पिले गुलाबी कलर से सजाया गया है निचे रंगोली डली हुई है जो की ग्रीन कलर में है साइड में ब्लू कलर का बॉक्स है।

यह एक पुस्तकालय की इमेज जिसमे ग्रीन पट्टे है वाइट कलर के पीलर है और बीचे में येलो पता हुआ है सामने ग्राउंड़ है जिसमे घास है लगी है कुछ टायर पड़े हुए है।

यह किसी ऑफिस की बिल्डिंग है जो की दो से तीन फ्लोर मैं है इसमें भी बहोत सारी खिड़कियाँ है।